नाइस सूट है और बच्चों के--

यहाँ ट्रैक्टर के पार्ट्स वगैरह सुधराए --

ये पेस्ट ये सब यहां पे सदिया किया जाता है किए जाते हैं।

लेबर है हवा मारने की मशीन है।

में मकान दिख रहा है बहोत बड़ा गेट दिख रहा है इसके सामने--

साइड मे लाइटिंग लगी है अच्छे खासे मस्त--

यहाँ पे गार्डन दिख रहा है हरे भरे--

बच्चे बहोत खेल रहे है यहां--

यहाँ पर भैस दो भैंस दिख रही है रोड दिख रही है।

रोड के साइड में बिल्डिंगों है पेड़ है--

किचन ओके लिए एक महत्वपूर्ण सन्देश देनी वाली एक।

एक चेयर रखी है आईना रखा गया हे ओर।

उसमे अच्छी खासी आमदनी भी होती है रोड पूरा।

अच्छे खासे मस्त गेट लगा है।

बिजली बिजली का एक बहुत बड़ा खंबा है पार्किंग ।

यहाँ फाइनैन्स के लिए गाड़ियां मिलती है।